बहोत सारे पीछे पेड़ पौधे है जो ग्रीन कलर का और ब्राउन कलर का बड़े बड़े है।

पीछे में एक घर भी बनाया है तो की लोहे की मदद से उसपे जाली वाले टाइपे है जो व्हाइट कर का है

ऐसे पाइप ग्रे कलर के और किसी प्रकार के और डेक्स का कलर है व्हाइट तथा सामने में दो बैलून दिखाई दे रहा--

यह एक गैस का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारे गैस है और इस गैस के ऊपर वाइट कलर का ढक्कन भी लगाया गया है और इस गैस को कलर है रेड ।

पीछे में फूल और पर्दों के मदद से डेकोरेशन किए गए हैं जो फूल का कलर है गुलाबी पीला रेड व्हाइट और भी कई प्रकार कलर के और पर्दे कलर पीला रेड--

तथा पीछे में लाइट भी जलता हुएं दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है।

इसके अंदर लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रहे है जो पीला कलर का है।

उसके ऊपर कई प्रकार के मशीन रखे हैं जो ब्लैक कलर के हैं।

एक चेयर भी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और बाहर में दो टेबुल है जो ब्लू कलर का है तथा यहां पे एक व्यक्ति--

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे में बहुत सारे पेड़ पौधे भी है जो ग्रीन एवं ब्राउन कलर का है।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति भी है जो कि व्यक्ति एक व्यक्ति का सर्ट का कलर ग्रे है तथा उसने टोपी पहना हुआ है।

यह एक पार्क का दृश्य है तथा यहां पे पार्क के अंदर लोहे के मृसरसर स्लाइडर और बनाया गया है।

यहाँ पे गाड़ी का एसकेलेटर वाला ओ उसका कवर भी रखा है जो--

यह एक कार का दृश्य है तथा इस कार के ऊपर एक कपड़ा उड़ाया गया है जो ग्रे कलर का है और वो कपड़ा भी फटा हुआ है।

यहां एक रेलवे स्टेशन के अंदर का दृश्य है तथा यहां पर एक ट्रेन भी दिखाई दे रहा है।

जो लोहे के मदद से बनाया गया है और उसका कलर पीला कलर का है।

लाइट का कलर व्हाइट है तथा यहां पे टाइल्स मार्बल के मदत से नीचे बिछाया गया है।

यह एक पहाड़ का दृश्य है तथा पीछे पहाड़ में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थल दिखाई दे रहे हैं जो ब्राउन कलर का है।

यहां पे जिसपे बैठी है वह लोहे के मदद से ड्राम बनाया गया है और यहां पे लकड़ी के मदद से एक छोटे-छोटे टेबुल भी बनाए गए हैं।

यहां पर दो व्यक्ति खड़े होकर देख रहे हैं और पीछे बहुत सारे पानी भी है तथा और एक कौवा भी है।

इसमें बहुत सारे चेयर दिखाई दे रहे और कॉपी वगैरा भी शीशे के अंदर दिखाई दे रहे जो शीशे का कलर है।

पीछे में बहुत सारी लाइट जलते हुए दिखाई दे रहे जो वाइट एंड ब्लू कलर का है।

शर्ट और पैंट पहना जो की व्हाइट और पैंट ब्लैक कलर का है तथा पाइप का कलर ग्रीन है।

यह एक कपड़े दुकान के अंदर का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारे कपड़े टांगे गए हैं।

बहुत सारे लाइट भी है जो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा नीचे में छोटे छोटे पैंट भी दिखाई दे रहे हैं।